और इसके पीछे एक अ ट्रक जा रहा है और ये एक यहां पे कुछ टायर भी परे हुए हैं।

पुजारी बैठा हुआ है अह रेड चादर ओड़के और यहाँ पे मूर्ति राखी हुई है काफ़ी सारी और ये यहाँ एक फैन लगा हुआ है।

और यहां हा शिशे हमें नजर आ रहे हैं और एक फैन भी हमें नजर आ रहा है और बॉडी का सारा सामान नजर आ रहा है।

ये एक लड़का है ये एक अपनी स्टाइलिस पिक्चर बनवा रहा है।

और ये एक आं बहुत सुंदर सी मूर्ति इधर से ले के जा रहे हैं ।

और ये कुछ अ गिलासेस पड़े हैं एक गियाली पड़ी हुई है और ये एक कुछ खाने के लिए पड़ी है।

ये एक अ इस्त्री वाले की दुकान है इस --

यहाँ पे योगा हो रहा है एक लड़की योगा कर रही है।

यहाँ पे बैंच है डैकस और यहाँ पैंटिंग जो है --

यहाँ पे ए ए ए अह कपड़े ट ए पेन शलट है एक आदमी इनकी सेटिंग कर रहा है रेडीमैड सूट है।

उसके बेक साइड पे एक रेड कलर की कार है और यहां ये ये बनने के लिए आई हुई है और कुछ लोग यहां पे मौजूद है ऐ --

और ये ऐं लोग सेल कर रहे हैं और ये से लोग यहां सेलिंग पर्चेसिंग करने आये हैं यहां पे--

ये एक कॉलेज आफ सिटी है या सिटी में कॉलेज है और उनकी आज सालगिरह है और ये सभी लोग बैनर बना के--